इस मकान के बाहर एक बड़ा सा बगीचा है जिसके ऊपर हल्की-हल्की हरी घास है और इसके बाहर --

दो खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा ब्लैक कलर का और एक खंभा रेड कलर --

बोहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यक्ति समान बेच रहे हैं तो कुछ व्यक्ति समान खरीद रहे हैं।

इसमें एक आम है और एक व्यक्ति आम खरीद रहा है और पीछे जाली लगी हुई है। यह दुकाने दीखने मे काफी अच्छी लग रही हैं। .

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।